चारों तरफ खिलौने ही खिलौने इस बड़ी सी दुकान में भरे हुए हैं लाइट्स भी बहुत ज्यादा लगी हुई हैं।

चाय पीते हुए या फिर कॉफी पीते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं यहां टेबल पर--

अगल बगल कुछ और भी दुकाने होंडा की एजेंसी शायद बंद पड़ी है।

किसी कार्यालय के अंदर जाने का यह रास्ता हमें दिख रहा है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां है और ग्रील खोल दिया गया है।

करने हेतु रखे गए है दुकान के बाहर कु--

यहां पर कोई हॉल के अंदर हमें सोफा लगा हुआ और यह एक सैलून --